बोर्ड के ऊपर सफेद अक्षरों से ए. टी. एम लिखा है बगल में कुछ अजीब सी भाषा में--

जिसे सामने खड़े एक व्यक्ति द्वारा पाइप के सहारे धोने का प्रयास किया जा रहा है।

सफेद रंग का पेंट और काले रंग का शर्ट पहना है बोर्ड पर एटीएम नीले रंग से लिखा हुआ हैऔर नीचे इंग्लिश में स्टेट बैंक --

और दो टेंट बने हुए हैं जिसमें एक टेंट नारंगी रंग का है एक हरे रंग का है।

जबकि दूसरा व्यक्ति जो उसकी दाढ़ी बना रहा है उसने सर पर हरे रंग का कपड़ा पहन रखा है और उसके हाथ में मशीन --

और कुछ छिल रही है बड़े-बड़े बर्तन रखे हुए हैं।

कुछ स्टैचू जैसे भी दुकान पर रखे हुए हैं कुछ सामान टंगे हैं।